जिसमें बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

ये चित्र में एक बहोत बड़ी फैक्ट्री का दृश्य हैं जिसमें दो चार आदमी लोग खड़े हैं।

और प्लास्टिक के बाल्टी और डैस्टवीन रखे गए हैं।

ये चित्र में एक बहुत बड़ा सा--

और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा हॉल है।

अ सुखी पेड़ भी दिखाई दे रही है चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हैं।

ए चित्र में एक बहोत बड़ा सा रेस्टोरेन है।

और बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए है चट्टानों से--

और बहुत सारे खिड़कियां भी हैं।

और सामने में गैलरी है वहां पर पर्दे लगे हुए हैं नीचे जमीन पर वाइट कलर के टाइल्स लगी हुई है।

बिल्डिंग के पास एक बड़े से पेड़ दिखाई दे रहा है।

और कुछ गार्ड लोग भी खड़े है।

और पुरे रेख में डब्बा डब्बा कार्टून रखे गए खिलोने के--

सीनरी भी रखी गई है बहुत सारे आइटम्स इस दुकान पर रखे गए हैं।

एक चित्र में एक बहोत बड़ा खिलौने का शोरूम है जिसमें बहोत सारे--

बहोत बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे--

इस चित्र में एक बहुत बड़ा सा रेस्टुरेंट है जिसमें बहुत सारे लाइट ही लाइट लगी हुई है और बाहर के --